सामने एक वाइट कलर का घर है घर पर--

कुर्सी है दो बोरी रखी हुई है आसपास पेड़ पौधे हैं जो बहुत ही हरे भरे है।

और उस पर शुतुरमुर्ग दौड़ रहा है और व्हाइट अंडा दिया हुआ है बगल में--

त तालाब में एक मछली कूदती हुई नजर आ रही हैं।

एक्क घर है घर के अंदर का एक रूम है रूम का भ्यू है जो हॉस्पिटल्स का लायबेट्रिक प्रतीत हो रहा है।

सामने एक किसी खेत का किसान का व्यू है वहां पर एक सोनालिका ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के थ्रेसर हैं।

और एक महिला भाषण दे रही है एक व्यक्ति है जो खरा हैं।

रखा हुआ है। चार सीलिंग फैन जो दीवार से चिपका हुआ है और एक टेबल पर मेनू लिखा हुआ है।